किसी ने खरगोश बनाया है अ और इसमें घोड़े भी बनाए हैं।

एग्जाम चल रहा है जैसे लग रहा है और बहुत सारे बेंचेस हैं।

और एक घर बना हुआ है जिसमें काफी भीड़ है और--

कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं और कुछ लोग बाहर हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं लेडीज से भी हैं और जेंट्स भी हैं रात का टाइम है।

सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है और ग्राउंड में राइड हो रहा है।

और आसपास ग्राउंड के काफी भीड़ लगी हुई हैं सब देख रहे हैं और चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है।

सामने हम देख पा रहे हैं कि यहां बड़ा सा यहां पे पार्क है।

सामने बेकरी की दुकान है और यहां पे काफी सारे अलग-अलग--

लैपटॉप चला रहा है और एक कमरे में मतलब एक ए_सी लगा हुआ है और ऊपर बहुत सारी लाइट लगे हुए हैं ऊपर एक झूमर लगा हुआ है।

और एक कार खड़ी है ब्लू रंग की और बहुत तेज धूप हुई है और आसपास बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

नीचे फर्श पर कार्पेट बिछाया है ब्लैक कलर का--

पकड़ के अपने हाथों से खींचा है और अपने पीठ को नीचे किया है और सिर को ऊपर--

कुछ लड़कियां है जो यहाँ पे नाच रही हैं और बहुत सारे ऊपर लाइट लगे हुए हैं।

बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं और--

हम्म रोड के साइड में एक बाइक दिख रहा है और--

सामने हम देख पा रहे हैं कि बड़ा सा यहां पे पार्क है।

और आसपास काफी बड़े-बड़े पेड़ पौधे लगाए गए हैं और पौधों को छोटे-छोटे--

और दिन का समय ऊपर लाइट भी लगे हुए हैं।

और एक मोबाइल फोन रखा हुआ है और बहुत सारे पेन रखे हुए हैं।

और साइड में यहां पे बेंचेस लगे हुए हैं दो बैठने के लिए--

और चारों तरफ यहाँ पे घेरा गया है और दीवार जो है वो कठरैन की है ब्लू रंग की है।

और बहुत ही सुंदर सफेद रंग किया है और उनके मूर्ति के बगल में--

सामने एक स्कूल है और इस स्कूल के ग्राउंड में--

और बहुत ही सुंदर कलर किया है और ग्राउंड के किनारे किनारे छोटे-छोटे पौधे लगाए गए हैं धूप हुई है दिन का समय है।

कलर किया गया और हम बिल्डिंग के आसपास काफी बड़े-बड़े पेड़ पौधे हैं बड़े-बड़े--